और कु एक लेडी दिखाई दे रही है जो खड़े हुए हैं बाहर--

कि तरफ एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और दो प्लांटस पड़े हुए हैं।

घंटाघर के पास आसपास अ पेड़ लगे हुए हैं।

ये फास्ट फूड का उम ठेला है पॉइंट है उम-उम जिस पे अह अलग अलग डिशेस का पोस्टर लगा हुआ है।

ये जेंट्स कॉस्ट्यूम शोरूम है जहां पे ले अ जेंट्स की--

और ऊपर की तरफ वाइट पंखा लगा हुआ है लाइट्स ऑन है बैलून से डेकोरेट किया गया।

और ये इनका कोलिडोर दिखाई दे रहा है। एक साइड पे सीढ़ियां नजर आ रही हैं सामने दीवार पर कुछ पेपर्स --